वायरिंग भी इसके अंदर हो रखी है और ढलाई करना रह गया है।

आदमी नहा रहे है और एक बहुत सुन्दर सा बीच में एक --

एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि सुपर क्लेयर्स के नाम से लगा हुआ है।

जोड़े हुए खरी है और एक लड़का हाथ जोड़ कर खरा है।

जो कि उस रोड पे कार पिकअप जा रही है।

यहां पे कुछ जानवर भी अंदर हैं।